यहां पे आप देख सकते हो ये स्कूल के--

यहां बंसल निवास लिखा हुआ है और यहां पे आप देख सकते हों ये एक्टिवा खड़ी हुई है।

यहां पे आप देख सकते हो टमाटर भिंडी--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

यहां पे आप देख सकते हो ये शादी का गर है ये यहां पे बहोत अच्छा तरह सजा रखा है यहां पे--

यहाँ पे हरियाली हरियाली दिख रहीं हैं ये घर भी बहुत सुंदर दिख रहा हैं।

यहां पे आप देख सकते हो पीछे आसमान दिख रहा है और यहां पे आप देख सकते हो बहोत अच्छा दिख रहा है।

कबर्ड रखी हैं ये कबर्ड नीले रंग के हैं।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

टीन ही टीन दिख रहे हैं और यहां पे ये प पिलर दिख रही है पिलर लग यहां पे पिलर लग लगाने के लिए यहां पे देख सकते हो।

हरियाली हरियाली दिख रही है ये लोग इसके स्लिप है शील्ड है और यहां पे आप दे सकते हो ये--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

यहां पे आप देख सकते है ये गुब्बारे लगे हुए है गुब्बारे सफेद गुलाबी सफेद संतरी सफेद नीले --

हरे और संतरी गुब्बारे लगे हुए हैं और यहां पे ये शीशे हैं शीशे के अंदर यहां पे --

और यहां के पास एक आदमी गुजर रहा है।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

यहां पे आरती--

और यहां डस्टबिन रखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हो--